शोरूम के आगे एक वैगन आर गाड़ी खड़ी है।

उसके साथ में एक वाइट कलर की भी गाड़ी है।

और एक सफेद रंग का बोलेरो गाड़ी खड़ी है।

यहां पर कुछ महिला भी उनकी मदद कर रही है।

येह पाइप की हमें दिखाई दे रहे हैं।

और घर के पीछे शेड लगे हुए हैं।

औड़ दरवाजे के ऊपर बहुत सुंदर--

लाल फूलों का गुलदस्ता दिखाई दे रहा है।

यह एक फंक्शन की फोटो है।

यह गेट काले रंग का है।

बैंक के बाहर दो व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

यह एक कॉस्मेटिकस की दुकान की फोटो है।

और बहुत सारा सामान और बहुत सा सामान दिखाई पड़ रहा है।

पीछे हमे चलते हुए व्यक्ति भी दिख रहे है।

घास भी दिख रही है है औ--

जिसके अंदर एक ट्रैक्टर्स का कंपनी लिखी है।

यह एक पार्क की तस्वीर है।